बैंक हैं यहाँ पे कुछ महिलाएं आदमी दिखाई दे रहे हैं। यह टेम्पो है।

ये एक बहोत बड़ी ग्रैंड प्लेस है।

ब्लू कलर के पोस्टर हैं राजकुमार जी का --